यहाँ सेफ्टी के लिए खंबे गाड दिए गये हैं |

बोहोत ही महंगी गाड़ी है इसको बोहोत पैसे में खरीदते हैं।

पेंट के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा।